यह एक पेट्रोल पम्प है इस पेट्रोल पम्प के सामने बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ीं हैं।

और ऊपर के जाने के लिये सीढ़ियाँ भी है और सारी औरते बाहर टिकट लेने के लिये खड़ी भी हैं |

ये एक मैदान है। जिसमें क्रिकेट मैच चल रहा है। इसमें तीन ही खिलाड़ी दिख रहे हैं।

इसमें बोहोत स ढेर सारा सामान भी रखा गया है और एक स्कूटी भी बाहर से खड़ी है। एक आदमी भी जा रहा है और इसके बगल में एक होटल भी है।

यह एक प्रेस की दुकान है और जो आदमी प्रेस कर रहा है। यह वाइट कलर की शर्ट में प्रेस कर रहा है।

और पार्क काफी सुन्दर है और पार्क के सामने बहोत सारे घर भी हैं और बहोत लोग इस पार्क में बैठे हुए हैं |

और इसमें लाइट भी बहोत ज़्यादा है जो बहोत सुंदर है।

यह एक स्वीट्स कॉर्नर है। यह बोहोत सुंदर और बोहोत बड़ी बिल्डिंग है।